तोता रखे हुए हैं हरे कलर के और उसके ऊपर ब्लैक कलर का शेर है पीले कलर के भी तोते हैं यहां पर।

और यहां पर ग्रीन कलर का बाजू मे भी शटर है।

यहां पर एक फंक्शन चल रहा है बहुत अच्छा यहां पर डेकोरेशन किया गया है।

यहां पर एक टेबल पर बहोत सारे बोर्ड्स रखे हुए जिसके उपर नेम्स लिखे हुए है।

व्हाइट कलर की है छोटे छोटे बोर्ड्स रखे हुए हैं और यहां पर जो टेबल है वो कांच का है और इसके है तरफ बहुत बैनर्स भी रखे हुए हैं।

यहाँ पर एक जिम है जिसके ऊपर वर्क लिखा हुआ है ब्लैक कलर का बड़ा सा बोर्ड है ये और उसके सामने एक आदमी ठहरा हुआ है जिसने बनीन पहनी हुई है।